यहां पे एक डस्टबिन भी रखा हुआ है पास में एक टावर भी लगा हुआ है जो लोहे का है।

यहाँ पे लोहे का स्टैन्ड बना हुआ है आस-पास बहुत सी घास भी उगी हुई है।

यहाँ पे एक गार्डन है जो बहोत बड़ा हैं| यहाँ पे एक टावर भी है| यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जो पीले रंग का है| पास में एक कुछ टूट पड़ा हुआ है।

यहां शेरावाली माता का मंदिर है जो हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं यहां पे उन्होंने हाथ में कमल लिया हुआ है पास में एक और मूर्ति है जो मिट्टी की बनी है मंदिर पे एक --

य एक जंगल का ज़ू है यहाँ पे एक तेंदुए की फ़ोटो ली गई है।

यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कुर्सी लाल रंग की है आस पास गमले रखे हुए है हरे रंग की चटाई बिछी हुई है।

कुआं है आस पास दो पेड़ भी है यहाँ पे एक कार है जो लाल रंग की दिखाई पड़ रही है।

यहाँ एक ब्रिज है जो लोहे की बनी हुई है।

यह एक घन है जो काफी बड़ा है। यह लाल रंग का सफ़ेद रंग का है। यहाँ पे कार खड़ी है जो काले रंग से ढकी हुईं है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है | यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे दो खिड़कियां हैं जो काले रंग की हैं वह लोहे की बनी हुई हैं ।